एंट्री और एग्जिट का दरवाजा गिया दिया गया है।

यहां एक कार वाला झूला भी है जहां एक--

यह लीची बाहर से गुलाबी और अंदर से सफेद होती है।

छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर सवार हैं।

ब्राउन और थोड़े से ब्लूइश कलर की है।

यह चित्र एक स्नेक बार का है।

डाटा रिकवरी की जाती है एवं मोबाइल रिपेयरिंग भी की जा--

यहां गुरुद्वारा सफेद रंग का है।

पम्प पी_वी_सी पाइप ऋषि पाइप

यह चित्र एक दुकान का है।

यहां लोग अपने वाहनों से जा रहे हैं।

इन लोगों के पीछे एक जिजस की मूर्ति बनी हुई है।

यह दृश्य बहोत शांति पहुंचा रहा है।

इस चित्र में एक आंटी पेड़ पौधों को पानी दे रही है।

कुछ बच्चे स्लाइडिंग कर रहे हैं।